अच्छे और सुन्दर से हमें --

यह एक बहुत ही अच्छे और सुन्दर से हमें --

सस्ते और अच्छे चौउमिन मिलते हैं। कम पैसे में और बहुत स्वादिष्ट चौउमिन यहाँ बना के --

इसीलिये लोग यहाँ चाउमीन को खरीदने के लिये बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं।

टमाटर दिखाया गया है जोकि यह टमाटर --

यह एक बहुत ही अच्छे और सुन्दर से हमें दुकान दिखाया गया है।

और यहाँ पे कम पैसे में किया है किया जाता है।